यह एक बहोत मशहूर होटल हैं। यहाँ पर लोग रहने आते हैं। यह काफी मशहूर होटल है। यह व्हाइट कलर की है यहाँ पर फर्श भी व्हाइट है।

यह एक बहुत अच्छा मैरिज-हॉल है। वाइट कलर का यह मैरिज-हॉल बहुत अच्छा लग रहा है यहा पर लोग शादियां करने आते है। यहाँ पर कुछ लोग टहलने भी आते है।

ऊपर व्हाइट कलर में आसमान है जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। यहां पर पार्क है जिसमें काफी पेड़ पौधे हैं। यह काफी अच्छा दिख रहा है। एक सड़क भी दिख रही है यहां पर।

यह एक जिम है यहाँ पर डंबल उठाए जाते है यहाँ पर एक से एक बैक लगाई जाती है यह बहुत बड़ी जिम है यह देखने मे काफी सुंदर है यह इंडिया में है।